बड़े बड़े बॉक्स और एक फूलों की चादर जैसी बिछी दिखाई दे रही है।

और एक लंबी मेज दिख रही है।

एक एल_ई_डी दिखाई दे रही है।

और दीवारों पर पंखे लगे हैं।

फैक्ट्री पर नीला कलर हो रखा है चारों तरफ दीवाल हो रखी है।

ज्यादातर गाड़ी इसमें इक्को या ओमी दिखाई दे रही है।

कर्मचारियों ने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी है।

यह पंखे फर्राटा पंखे हैं।

यह किसी मेले जैसा दिखाई देता है।

तालाब को पार करने के लिए एक छोटा सा लकड़ी का पुल बनाया गया है जी।

एक पुरुष रिसेप्शन की कुर्सी पर बैठा है। उनके ऊपर एक एल_इ_डी लगी है।

इस फोटो में एक लड़के का स्टैचू खड़ा दिखाई दे रहा है।

दो तरह के बैंक भी दिखाई दे रहे हैं औ--

और काफी सारी साइड में भी दुकान हैं।

चलता हाइवे दिखाई दे रहा है जिस पर एक गाड़ी दिख रही है।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

सामने हैप्पी बर्थडे लिखा है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

शीशों के गेट और शीशों के अलमारियां है।

लकड़ी वाले की दुकान का फोटो है।

जिस पर एक बड़ा बोर्ड लगा है।

जिसमें ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे बच्चे का जन्मदिन का फोटो है।

काफी लोग झरने के नीचे नहाते दिखाई दे रहे हैं।

झरने ऊपर से गिर रहा है।

काफी लोग इसमें नहा रहे हैं।

इस फोटो में सामने कोई दुकान या कोई ढाबा जैसा दिख रहा है।

नया बेड पर पन्नी चढ़ी है और गद्दों पर भी पन्नी चढ़ी है।

गमले पर गुलाबी कलर हो रखा है।